एच_डी_एफ_सी बैंक है।

कार खड़ी हुई है और बहोत सुंदर लाइट से डेकोरे--

और फिसल पट्टी में सीढ़ी भी बनी--

और यहां पे लाइट्स भी लगी हुई है।

जहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं।

यह जगह कार रिपेयरिंग का लग रहा है।

यह गया हैं और पीछे ब्लैक कलर के--

जहां पे दो बस दिखाई दे रही है।

पेड़-पौधे दिख रहे है और कुछ छीन के पेड़ भी दिख रहे है।

और यहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं और फ्रीजर भी दिख रहा--

और एक लेडी भी दिख रही है।

यह एक गार्डन है जो की बहोत हरा भरा है और यहां बैठने को--